एक मकान बना है जिसकी दीवार का कलर व्हाइट है और बिजली की तार भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने ब्लू और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ पे --

पे बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे हैं और लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक बस रखी हुई दिखाई दे रही है जिसका कलर व्हाइट है।